यह बहुत बड़ा जंगल है जंगल में बहुत सारा पेड़ पौधा --

इसमें एक आदमी खड़ा है टोपी पहना है जीन्स पहना है चप्पल पहना है टी-शर्ट पहना है उजला टी-शर्ट है पीला टोपी है बहुत सारा खिलौना है --

यहाँ पर टेम्पू भी लगा है बहुत सारा टे टोटो है साइकिल भी है आदमी मोबाइल से --

इसमें दो आदमी बैठे हुए है।